इस फोटो में हमें काफी सारे बच्चे नजर आ रहे हैं जो कि बैठे हुए हैं और काफी सारे हमें बैलून्स दिख रहे हैं जो कि डेकोरेट है एक बच्चा स्टेज पे खड़ा हुआ है हाथ में माइक है कुछ बोल रहा है।

एक पर्सन है जिसके हाथ मे बुक रखी हुई है और वो बुक शो कर रहा है जिसने रेड और व्हाइट ब्लू व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई--

एक ठेला दिख रहा है ऑटो दिख रहे है ब काफी सारे लोग दिख रहे है जो कि रोड पे चल रहे है और आसमान --

इस फोटो में हमें एक पार्लर देखने के लिए मिल रहा है जो कि काफी सुंदर दिख रहा है अंडरग्राउंड स्लाइड देखने को मिल रही है बैकग्राउंड में काफी सारे प्रोडक्टस देखने को मिल रहे है।

साड़ी पेहनी हुई है काफी डिफफरंट डिफफरंट कलरस की साड़ी उन्होंने पेहनी हुई हैं पेड़-पौधे दिख रहे हैं बैकग्राउंड मे घास बहुत ज्यादा दिख रही है खेत दिख रहे हैं।